और इसके बाहर एक बाधा भी है।

और कपाड़ पे दौरा रखा हुआ है दौरा में बहुत सारा सामान है।

बहुत ही बड़ा-बड़ा नाव है जिसके ऊपर --

यहाँ क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं।

जिसके ऊपर उम्म पानी भी है थोड़ा बहुत

पेंट किया हुआ है और नीचे रेड और वाइट दोनों पेंट किया हुआ है।

पास बैग है। सब पढ़ाई करने आये हैं। यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे हैं।

यहाँ मेला लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे --